वो दिन जब उसको आकृति में बनाया गया है जिसमें की लोग आकर रोज पूजा-पाठ करते है।

ये जगह हाजीपुर का ये जंक्शन हाजीपुर का एक जगह का नाम है और इसके बाहर आपलोग देख सकते है।

और इस जगह पर यहहाँ पर देख पा रहे जो आपको एक नदी दिखाई पड़ेगी नदी के ऊपर आपको पूल दिखाई पड़ेगी ये देखिए।

अगर बॉडी का गलत हो जाती है तो अच्छा खासा मेन्टेन्स करना ही पड़ता है ये देखिए होता क्या है।

और इस जगह पर यहाँ पे देख पा रहे कि ये जो बाल कटिंग हो रहा है सैलून में हमलोग जो है अपने को --

देखिए मछुवारे देखिए यहाँ बहुत सारे मछलियाँ दिख रही है बहुत ही ताजा एवं फ्रेश फ्रेश मछली जो कि इन क्वालिटी में लाते है।

पिने के लिए कुछ टाइप का है और जैसा की मैं जानता हूँ --

और उसके बाद जो है गाड़ी को सर्विसिंग करने के बाद जो साफ की जाती है जो कि जिसके गाड़ी की जो भी खराबी होती है।

जो मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख पा रहे है यहाँ पे घर की जब ढलाई हो रही है रोज यहाँ पे घर की ढलाई हो रही है।

अच्छा खासा नामी ब्रांड है जो की जो सूर्य होता है खाने में बहुत अच्छा मजा आता है इसका आटा इसका आटा हमलोग जो रोटी जो बना के खाते --

वही वहाँ पे वही बिकती है और ये मचिलियाँ --

देख पा रहे यहाँ पे बहुत सारे लोग एक आपको दिखाई पड़ेगी एक आपको गलत दिखाई पड़ रही होगी होटल के नीचे किराना दूकान आपको दिखाई पड़ रही --